यहाँ पे बहुत सारे माले बने हैं माले हैं हर एक कलर का देखने में खूबसूरत लगते हैं माले माले बहुत बढ़ियां है।